वीस है यहाँ कोच खड़े हुए है और उम ग्राउंड बहुत बड़ा है वहाँ कात --

जो इदर उदर घुम रहे हैं और --

यहां काफी पेड़-पौधे लगे हुए हैं और --

कोई ज पूजा कर रहे हैं और काफी--

ड्राॅइग बहुत अच्छी तरह से ड्राय की है बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाई है उन्होंने ।

और बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल को देख के--

बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं लाइटें लगी हुई हैं बाहर --

पूजा आ पूजा वगैरह करने पूजा अर्चना होती है ।

यह जो टैटू बनाता है बहुत अच्छी डिजाइने निकालता है बहुत अच्छी डिजाइने है यहाँ पे काफी--

सेक्योरिटी है सेक्योरिटी कार्ड भी लगी हुई है और गेट पे कार खडि --

और खूब सारे बहुत खूबसूरत भी दिख रहा है।

और लॉंच का खुप्सूरत नजारा देखने को मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे --

यह एक लॉन है यहाँ पे काफी सारी कुर्सियाँ लगी हैं यहाँ पे लेडीज खड़ी हैं और--

और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बिल्डिंग में ए_सी वगैरह भी है ।

यह इसकी दुकान है यहाँ पर काफी नोट्स वगैरह मिलते हैं बुक्स वगैरह मिलते हैं यहाँ पर काफी बुक्स हैं बुक्स का भंडार लगा हुआ है ।

और काफी अच्छी अच्छी बुक है बहुत अच्छा नज़ारा है ।

अपनी मछली खरीद रहा है काफी मछली के लिए भीड़ लगी हुई है और काफी सारी मछलियाँ दिख रही हैं ।

यहाँ एक फंक्शन का सेटअप है यहाँ पे फाउंटेन वगैरह अच्छे लगे हुए हैं लाइटिंग लगी हुई है और--

और एक बंदा अपनी पिक्च पि फोटो खींच रहा है और --

यह एक फंक्षन का ये दीख रहा है वहाँ पे एक अपना लड़का फोटो खचवा रहा है इसके साइट में --